काम चल रहे हैं एक जगह पे एक सिलेंडर लिफ्टिंग कर रहे हैं ऊपर में क्रेन लेके और एक सिलेंडर में--

और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है खाली रोड है पास में बहुत सारे पेड़ दिखाई दे रहे हैं।

अंदर करके सजा हुआ है और शादी का घर में जैसे सजाता है फूल लेके--

यहां पे एक सब्जी का दुकान दे रहा है ओपेन मार्केट में यहां पे बेड़ी के ऊपर बहुत सारे सब्जी रखा है जैसा बध्धा गोभी--

जब मसला बनता है ना वो इसी मसीन से बनता है और पास में दो आदमी खड़ा है मसीन के पास।

यह एक हॉल बैंक्वेट टाइप का हॉल दिखाई दे रहा है यहाँ पे शादी का मौसम लग लग रहा है यहाँ पे चल रहा है अभी।

वहां लड़का लड़की लोग बैठा है बैठके एग्जाम दे रहा हैं लिख रहा है और--

ये रोड के पास एक होटल दिखाई दे रहा है जिसका नाम है केरला होटल भेज एंड नॉन वेज रेस्टोरेंट --

वहाँ पे कुछ होल्डिंग वगैरह लगा हुआ है सीमेन का पास में पेड़ है दूर में छोटा सा पहाड़ दिखाई दे रहा है।

ये एक बड़ा सा बिल्डिंग है जिसका नीचे में एक होर्डिंग लगा हुआ है जो स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का होर्डिंग है इस नाम से स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया का--

यहां पे एक जलाशय दिखाई दे रहे हैं थोड़ा सा पानी है जिसमें इसके पास में इसके ऊपर भी कुछ मट्टी है उसके पास ही एक बाउंड्री देखिए एक यह--

बाउंड्री वॉल है उसके उस साइड एक कारखाना है कारखाना में बहुत सारे एक चिमनी दिखाई दे रहा है एक टीनों का घेरा हुआ बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

यहां पे एक मार्ट दिखाई दे रहे है जहां पे बहुत सारे पेड़ है यहां पे सामने में दो पेड़ का कांडा दिखाय दे रहा है दो पेड़ --

यहां पर एक बड़ा सा बैंक्वेट हाल दिखाई दे रहा है। तीन बिल्डिंग पूरा लाइट से सजा--

ये एक डॉक्टर का शॉप है क्लीनिक शॉप यहां पे डॉक्टर बैठा है बैठ के एक औरत एक आदमी को कुछ--